चेयर कलर ब्लू है सामने बहुत सारी मेजे भी पड़ी हुई हैं ।

वाइट कलर गाड़ी का बॉनेट खुला हुआ है।

खड़ा है अंदर कुछ सामान नज़र आ रहा है सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

एक ब्लू और येलो कलर का बैनर लगा हुआ है एक मैरून कलर का बैनर लगा है।

बोहत सारे लोग वॉटर ट्यूब ले के नहा रहे हैं।

पुतरे नज़र आ रहै है दो पुतरों ने शेरवानी--

वाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है सामने एक लड़का खड़ा हुआ है ।

येल्लो कलर के पर्दे लगे हुए है येल्लो कलर के--

एक रेड कलर का बैनर है एक वाइट कलर का बैनर है।